उसके बगल में एक गुटका के आपको शॉप दिख रही होगी न आपको सामने बहुत सारी बॉक्स दिख रहे होंगे उस बॉक्स में बहुत सारी चप्पल रखे हुए हैं।

एन आप देख सकते हैं उसके बगल में बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे| कुछ लेडीज़ दिख रहे होंगे एंड कुछ जेंट्स दिख रहे होंगे।

हेलो गाइस जैसा की आप देख सकते हैं यहाँ पर टाटा इस्कॉन का आपको शॉप दिख रहा होगा एंड उसके ऊपर अनिल एटो--

हेलो गाइज आपको सामने बैंक ऑफ़ बरोदा का ए.टी.एम. दिख रहा होगा

हेलो एव्रीवन ! जैसा की आप देख सकते है आपको रोड के साइड का व्यू नज़र आ रहा होगा एण्ड यहाँ पे आपको बहुत सारे साधु संत भी आपको दिख रहे होंगे |

एण्ड आप देख सकते है बगल मे एक चप्पल की दुकान भी आपको दिख रही होगी उसके बगल मे--

श्री मथुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय एंड आप देख सकते हैं आपको एक बड़ा-सा गेट नजर आ रहा होगा जो की वो ब्राउन कलर का---

एंड आप देख सकते हैं आपको एक लड़का दिख रहा है एंड एक बाइक भी दिख रही है उसपे लड़का बैठा हुआ है बैग टांगा हुआ है।

--एंड साइड साइड में बहुत ही बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं एंड सामने बादल भी बहुत अच्छा लग--

एंड यहाँ पर चार काउंटर बने हैं एंड आपको सामने दो ब्लैक कलर की चेयर भी दिख रही होगी |